यह एक कॉफी की दुकान है यहां पर बहुत सारे लोग कॉफी पी रहे हैं।

एक जिम कि फोटो है जहां पे दो तीन ठो आदमी फोटो खींच रहे हैं एक आदमी पीछे अपने सर पे हाथ रखा हुआ है पीछे जिम कि मशीन है।

एक पीछे झूला भी लगा हुआ है।

मंदिर के साइड में एक हरा भरा पेड़ भी लगा हुआ है।

जिसमें तरबूज आम संतरे सेब पन्नी रखी हुई है।